कैची है कंघी है आइना है बहुत सारे बॉक्स हैं एक टो कुर्सी है टोवल है।

ये एक् चर्च का फोटो है। जिसमे एक प्लस साइन दिख रहा है। ऊपर एक छोटा प्लस साइन दिख रहा है। जो सभी पकड़े हुए है।

पर्दा है । मार्बल दिख रहा है। नीचे मार्बल दिख रहा है टूल है।

यहाँ एक दुकान है ये जिसका शटर दिख रहे है लाइट दिख रहे है बहुत सारा आदमी दिख रहे है बाइक देख रहे है टेबल देख रहे हैं बॉक्स दिख रहे हैं दवाई दिख रहे है।

सामने एक कुछ दिख रहे हैं। आदमी नहीं दिख रहें हैं। पिलर दिख रहे हैं -बड़ा बड़ा और नीचे रास्ता दिख रहे हैं उधर स्विच बोर्ड दिख रहें हैं दूर में पाइप दिख रहें हैं ऊपर --